और आस पास बहोत सारे खेत और पेड़--

सामने एक व्यक्ति खड़ा है सीढ़ियां भी बनी हुई है।

स्कूटर भी रखे हुए हैं ये बच्चों के खिलौने हैं और आस पास कुछ समान दिख रहा है।

बहोत सारे फ्रिज यहां रखे हुए हैं अलग अलग रंगों के फ्रिज है।

टोंठे ये कि कौन टाइत के बने हुए हैं।

नीचे छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

मोटरसाइकिल की फोटो भी बनी हुई है।

जिनमें की खाने पीने वाले चीजें रखीं गई हैं।

सामने दो बेड लगे हैं और पीछे भी बेड रखे हुए हैं।

एक व्यक्ति यहां काम कर रहा है।